मुझे कैफ़े फ़िलहाल खली नज़र आ रहा है यहा कोई नहीं दिख रहा है ।

यहाँ लाइटिंग लगी हुई है कुछ लाइटे चालू है कुछ बंद है रखा हुआ है।

यह एक कैफ़े नज़र आ रहा है जहा कोई भी है ।

यह एक गार्डन नजर आ रहा है यहां कुछ लोग बैठ के खेल रहे हैं कुछ लोग का ग्रुप चेयर पे बैठा है कुछ खड़े हुए नजर आ रहे--

यह एक झील नज़र आ रही है जिसमे एक नाव खड़ी हुई है ।

पानी के अंदर तीन औरतें जा रही हैं।

यहां बहुत सारी खिड़कियां लगी हुई है एक बड़ा सा दरवाजा भी सुनसान जगह है एक लाल कलर का खंबा भी पेड़ लगे हुए हैं।

यह एक शादी का मण्डप लगा हुआ है ।

जुरासिक पार्क है यहां वेव स्कूल डी_जे लिखा हुआ है।

शादी का स्टेज है जो लाल सफेद फूलों से डेकोरेट है यहां दो सोफे रखे हुए हैं पीछे ऑरेंज कलर के पर्दे डाले हैं गमले रखे हुए हैं पौधे रखे हुए हैं।